यहाँ विवो विवो लिखल ह। यहाँ पर कई मोबाईल है। जिओ फोन ह। अ अन्डर्ग्रैउन्ड में होगो दुकनियाँ उ दुकनियाँ में लाल ओहो डिब्बा सफेद एवो डिब्बा नीला गो डिब्बा ऊपर लाल रंग के पोस्टर प लिखल ह जियो।